सिडी दिख रही है स्-फिसलनी दिख रही है। सामने एक टू विलर वाहन खड़ा है। एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के अंदर दो चैनल गेट दिख रहे हैं।

पीछे हैंड बैग और बोरी पकड़ा है और कुछ लोग दिख रहे हैं बिजली के खंबे दिख रहे हैं हरे-भरे झाड़ दिख रहे हैं बड़ा सा मैदान दिख रहा है बॉउन्डरी दिख रही है कुछ मकान दिख रहे हैं।

एक बड़ा सा पहाड़ जैसा पत्थर दिख रहा है। पत्थर के नीचे लकड़ी की ग्रिल दिख रही है। ऊपर साइड आसमान दिख रहा है। कुछ --

एक वाटरपार्क की फोटो हैँ जिसमें एक मकान बना हुआ हैँ मकान के ऊपर लोहे की ग्रिल बने हुए हैँ ग्रिल में झंडे लगे हुए हैँ एक फिसलनी बने हुई हैँ जो के व्हाइट और ब्लू कलर की हैँ ।